इस फोटो में एक प्लेट मे एक डोसा रखा है जो एक हरे केले के पत्ते पर सर्व किया गया है।

यह रात के समय का फोटो है जिसमें एक डबल साइकिल रिक्शा --

खड़ा है रिक्शा लाल और पीले रंग का है।

एक आदमी रिस्का के सामने खड़ा है और उसके पीछे और कुछ व्हीकल्स है बैकग्राउंड में एक --

इस फोटो में एक लॉन्ड्री सर्विस का बोर्ड दिख रहा है जो नीली गेट पर लगा हुआ है।

जैसे होटल लॉन्ड्री ड्राई क्लिनिंग स्टीम आयरन स्टेन रिमूविंग एक्सेक्ट्रास ।

साथ ही ट्वेंटी फोर आवर सेवन सर्विस और कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है।

और तू ऊपर कुछ लिखा हुआ है लेकिन दूसरी भाषा में।

दुकाननों के बाहर बहोत सारी बाइक्स और कुछ लोग खड़े हैं आसपास पेड़ पौधे भी है।

उसके हाथ पर कुछ पेपर्स हैं और उसमें लाइट ब्ल्यू शर्ट और ब्राउन पैंट्स पहनी हुई हैं।

पीछे कई लोग काम करते हुए देख रहे हैं और आस पास कंक्रीट का काम चल रहा है।

इस फोटो में एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर कामगर कंक्रीट का सरफेस बराबर कर रहे हैं।

उनके पास टूल्स है और वो झुक कर काम कर रहा है।

पीछे मिट्टी का बड़ा ढेर है।

कुछ लोहे की सरिया और व्हीकल्स दिख रही है।

यह एक खूबसूरत जगह का फोटो है जहां लोग एक छोटे झरने या नदी में इंजॉय कर रहे हैं।

फिरंगी कलाकारीया बनी हुई है बहोत सारे लोग एंट्री के पास खड़े हैं और कुछ लोग स्टॉल पर कुछ सामान बेच रहे है।

यह एक स्कूल का फोटो है जहां पर स्कूल के ग्राउंड मे बच्चे सफेद यूनिफॉर्म पहने हुए है।

उनमें पीले हरे सफेद और नीले रंग की बर्डस है।

वे सभी लकरी की चारियो पर बैठे हुए हैं और कुछ पक्षिया दाने खा रहे हैं।

ब्रिज मेटल से बना हुवा है और उसके नीचे एक नदी भी है।

आसमान साफ है और सूरज की रोशनी दिख रही है।

आसपास योगा मैट्स भी दिख रहा है।

असल में ये एक एक्सरसाइज है जो योगा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है।

माहौल फ्रेंडली और टीम एक्टिविटी जैसा लग रहा है।

दोनों तरफ रेलिंग है और पास में पत्थर का फुटपाथ है।

दूर तक पानी और हरियाली नजर आ रही है मौसम शांत लग रहा है।

पीछे एक ऊंचा सीमेंट ड्यू का दीवार है और उसके पास सफेद छत वाली बिल्डिंग दिख रही है।

इन शांत और हल्का सा इंडस्ट्रियल एरिया जैसा लग रहा है।

इस फोटो में बस्तर डेरी फार्म नाम का एक दुकान दिख रहा है।

ये एक डायरी प्रोडक्ट की दुकान लग रही है।

यह एक घर या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साइट का एरियल व्यू है।

बिल्डिंग अभी पूरी तरह से बना नहीं है छत पर मिट्टी और पत्थर के ढेर है।

इस फोटो में एक स्टेडियम या स्कूल ग्राउंड के पास लोगों की लाइन लगी हुई है।

सब लोग एक शेड के नीचे खड़े हैं कुछ के हाथ में बलूंस है।

ये एक बाजार या मार्केट की तस्वीर है एक छत के नीचे लोग फूल और सब्जियां बेच रहे है जमीन पर बहोत सारे फूलों के ढेर लगे है।

जैसे की पीले और नारंगी ऑरेंज कलर की गेंदा फूल --

कुछ लोग खरीद रहे हैं बैकग्राउंड में और भी सामान और दुकाने दिख रही है।

यह एक बड़े बैंक्वेट हॉल या मैरिज हॉल का फोटो है।

हॉल को एक इवेंट के लिए सजाया गया है जिसमें सफेद सोफा और चेयर्स लगी हुई है।

इस फोटो में एक स्टेज पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है बहुत सारे बच्चे और लड़कियां रंग बिरंगे ट्रेडीशन कपड़ों में डांस कर रहे है।

ऑडियंस में कुछ लोग बैठे हुए है प्रोग्राम देख रहे है।

यह एक रात के वक्त का फोटो है जहां एक बिल्डिंग के बाहर एक छोटा फाउंटेन है।

फाउंटेन मैं पानी कि धार ऊपर कि तरफ जा रही है।

उस पर नीले लोशनी पड़ रही है।

पद के लिए ट्रांपोलिन का उपयोग किया गया है ये एक व्यस्त और रोशनी से भरा स्थान लग रहा है।

उसने एक पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी है और वो एक ट्राइपॉड स्टैंड पर एक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट से दिख रहा है।

गली में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और पीछे इसका फोल्डिंग भी दिख रही है।

इस फोटो में एक कपड़ों की दुकान का सीन है।

यह रात में एक फंक्शन में खड़े कुछ लोगों का फोटो हैं।

चार लोग तीन औरतें और एक आदमी के साथ पोज़ दे रहे हैं।

औरतों ने साड़ी पहनी है और आदमी ने कुर्ता पजामा।

बैकग्राउंड में एक स्टेज जैसा सेटअप है जिसे फूलों और लाइटों से सजाया गया है।

उसके कंधे पर एक पीला रंग का कपड़ा रखा हुआ है।

दीवार पर कुछ फोटो फ्रेम्स और टी_वी भी लगा हुआ है जमीन पर कटे हुए बाल गिर गए हैं।

दोनों तरफ दुकाने हैं। लोग चल रहे हैं। कुछ बाइक चला रहे हैं। पूरा मार्केट भीड़ से भरा हुआ है लोगों से भरा हुआ है।

इस तस्वीर में एक लड़का सैलून में बाल कटवाते वक्त सेल्फी ले रहा है उसने व्हाइट टी शर्ट और जींस पहनी है पीछे हेयर ड्रेसर के साथ बाल सेट कर रहा है स्टेनर से--

सभी ने सेफ्टी हेलमेट और माक्स पहने हुए है काफी लोग ने ऑरेंज या लाल कलर की सेफ्टी जैकेट और कपरे पहनी है।

एक आदमी सामने ग्रीन हेलमेट और येलो जैकेट में उन्हें कुछ समझा रहा है जैसे कोई मीटिंग या ब्रीफिंग हो रही है।

ये एक बिजी सरक का फोटो है जहाँ लोग और व्हेइकल्स है।

सड़क के किनारे कई दुकानें हैं और बीच में एक बड़ा पेड़ भी है।

एक आदमी सड़क पर चल रहा है और कुछ ऑटो रिक्शा भी खड़े हैं।

आसमान में बादल छाए हुए हैं जिससे मौसम थोड़ा ओवरकास्ट लग रहा है।

इस फोटो में एक स्टेट बैंक ए_टी_एम के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है।

आस पास कुछ दुकानें और एक बाइक भी दिख रहा है।

इस फोटो में एक आदमी ब्लू और व्हाइट टी शर्ट पहने हुए बाइक पर बैठा है।

हर टी_वी के नीचे उसका प्राइस टैग और फीचर्स लिखा हुआ है।

बैकग्राउंड में एल_जी का बोर्ड साउंड भी दिख रहा है।

यह डिस्प्ले नीटली अरेंज्ड और शोरूम की रोशनी से सब कुछ क्लीयरली नजर आ रहा है।

इस फोटो में दो आदमी एक बैंक या ऑफिस की खिड़की के सामने खड़ा हुआ है।

दोनों शीशे पर लगे नोटिस पढ़ रहे है।

एक ने सफेद शर्ट पहनी है और दूसरे ने सफेद टी शर्ट --

पिछे पर मेजरिंग के लिए कुछ स एक टूल भी रखा हुआ है।

एक आदमी सामने काम भी कर रहा है और कुछ दर्जन केले भी ऊपर टंगे हुए हैं।

इस फोटो में एक सुंदर बिल्डिंग का एंट्रेंस देख रहा है बिल्डिंग का फ्रंट ग्लास से बनाया हुआ है जो चमक रहा है।

बीच में एक छोटा सा मूर्ति भी रखा हुआ है।

जो पिंक कपरे से सजाया हुआ है और इस मूर्ति को देखकर लग रहा है कि ये गनेश की मूर्ति है।

आस पास कुछ औरतें भी खड़े हुए हैं साड़ी में --

यह एक बिजी मार्केट या सड़क का फोटो है एक बंधन बैंक की ब्रांच दिख रही है।

इसके आसपास और भी दुकानें हैं सरक पर बहुत सारी बाइक साइकल और रिस्का भी है।

एक आदमी ठेले पर नींबू या संतरे जैसा कुछ बेच रहा है।

सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं गर्मी के बावजूद मेहनत से काम कर रहे हैं।

इस फोटो में एक रेलवे स्टेशन का सीन है एक आदमी प्लेटफार्म पर खड़ा है और उसके पास कुछ कुत्ते भी बैठे है।

यह एक कंस्ट्रक्शन साइट या रिनोवेशन का फोटो है एक आदमी एक छोटी जगह में --

आगे एक डेस्क है जिसमें कंप्यूटर माउस पेन पड़ा है।

पिछे कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग बात कर रहे हैं पूरा माहौल बिजी लग रहा है।

दोपहर का टाइम लग रहा है आसमान साफ़ है।

फोटो में एक लंबी नीली ट्रेन दिख रही है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स का जाल है।

पीछे एक पहाड़ और कुछ क्रेंस भी नजर आ रहे हैं।

ये तस्वीर एक जंगल और पत्थरों वाले इलाके की है एक आदमी नीचे खड़ा हुआ है और दूसरा पत्थरों पर चढ़ा हुआ है।

यह एक पार्क का फोटो है जहाँ पर लोग योगा कर रहे है कई लोग --

योगा मैट पर अधोमुखा सवाशन जैसे पोज कर रहे है।

फोटो में एक ट्री और बैकग्राउंड में कुछ घर भी दिख रहे हैं।

यह एक छोटी दुकान का फोटो है जो एक बार्बर शॉप लग रहा है दुकान के अंदर तीन लोग बैठे हैं और --

एक लड़का कुर्सी पर बैठ कर फोन में किसी से बात कर रहा है दुकान का इंटीरियर येलो कलर का है और उसमें एक आइना भी दिख रहा है।

इस फोटो में एक लड़का जिम में खड़ा है जहां आस पास कई जिम इक्विपमेंट दिख रहा है उसने ब्लैक जिम वेयर पहना है और वो फिटनेस में काफी एक्टिव लग रहा है।

पीछे कुछ लोग वर्कआउट कर रहे हैं पूरा एनवायरमेंट एनर्जेटिक है।